नशायें हैं हमारे भारत की बहुत ही--

काफी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। ज्यादा तर ये गांव में देखने को मिलते हैं शहरों में बेसिकली लोग इन्हें कम ही पालते है। बट गांव में इन्हें ज्यादा लोग ही इस्तेमाल करते हैं कबूतरों को --

और एम ए बी ए डिग्री प्राप्त प्राप्त भी करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं।

ये एक केक है। इसे हम अपने बर्थडे पर काटते हैं। आनंन्न्न्दित तरीके से इसे दोस्तों के मुँह पर लगाते हैं।

लोग कहते हैं कि ऐसी शरीर बना लिया भाई बहोत मेहन मेहनत करनी पड़ती है शरीर बनाने में।